इस पिक्चर में देखिएगा कुछ महिलाएं नीचे बैठी हुई है ।

इस स्टील का देखिए यहां पर रेलिंग दिखाई दे रही है।

और काफी सारा सामान अलमारी दिख रही है सामने देखिए एक--

और यहां पर देखिएगा गैस का बाटला नजर आ रहा है।

कुर्सी दिखाई दे रही है और सामने एक तस्वीर टंगी भी दिखाई दे रही है।

और ऊपर नीला नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है और बाहर एक रोड भी दिखाई दे रही है।

साइड में एक लाल कलर का पर्दा भी नजर आ रहा है।

काफी बड़ा स्टेज है जो कि लाइटिंग से सजा हुआ है।

और काफी सारे कपड़े टंगे हुए हैं सूट टंगे हुए हैं यहां पर।

और सामने देखिए दीवार पर कुछ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

और काफी सारे मकान दिख रहे हैं पत्थर दिख रहे हैं पास में पड़े हुए।

और ये रेत अ मिट्टी का ढेर दिख रहा है।

और एक दो-तीन दरवाजे भी दिख रहे हैं बंद हुए।

यहां पर एक बाइक दिखाई दे रही है उस उसके पास में एक आदमी खड़ा हुआ है।

यहां पे देखिएगा फ्रेंड एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है।

और पीछे की तरफ देखिएगा दूर पेड़ दिखाई दे रहे हैं बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं और ऊपर नीला-नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक पीछे की तरफ बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा है।

और बड़े-बड़े जो पाइप दिखाई दे रहे हैं जिसमें से धुआं निकलता दिखाई दे रहा है।

और सारे स्टूडेंट बैठकर देखो उन्हें ध्यान से सुन रहे हैं।

काफी सारा सामान पड़ा है सामने एक सीढ़ी दिखाई दे रही है।

एक आदमी मोबाइल पर बात कर रहा है सामने तीन कुर्सियां रखी हुई है गुलाबी कलर की।

और पीले कलर का टेंट बना हुआ है ।

इस पिक्चर में देखिएगा फ्रेंड्स एक घर दिखाई दे रहा है उस और देखिए साइड में टेंट लगा हुआ है।

पाइप दिखाई दे रहा है हरे कलर का पाइप नजर आ रहा है बिजली के तारे दिख रहे हैं ऊपर बादल भी नजर आ रहे हैं।

पीले कलर की कुर्सियां हैं और गोल्ड टेबल है जिन पर पर्पल कलर का कपड़ा पिछा हुआ है बहुत खूबसूरत लग रहा है।

और वहां देखिएगा इंजन का यहां पर इंजन बना हुआ--

बिजली के खंबे भी नजर आ रहे हैं लाइट्स भी दिखाई दे रही हैं और पीछे पेड़ भी नजर आ रहे हैं और रात का यह समय है।

चैंप चैंप लिखा हुआ है नजर आ रहा है।